चित्र में सभी वर्कर एक ड्रेस पे दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे एक लड़का खड़ा हुआ--

एक महिला बैठी हुई दिख रही है।

बैनर में एक्सिस बैंक और ए_टी_एम लिखा--

चित्र में मुझे कई सारी फोर व्हीलर गाड़ी खड़ी हुई--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

चित्र में मुझे कई सारी गाड़ियां खड़ी हुई दिख रही हैं।

चित्र में शॉप पे रखा कई सारा सामान दिखाई--

दे रहे हैं चित्र में मुझे ऊपर सीलिंग पर लगा बल्ब दिख रहा है।

चित्र में मुझे एक फूटी हवेली सी दिख रही है चित्र में बादल दिख रहे है।